वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहने हुए उसके बगल में--

एक बहुत बड़ा पार्क है पार्क में मोर है पेड़ है।

बगल में काले रंग के गेट है गेट के अंदर ग ग ग गाड़ी है।

एक जिम सेंटर है जो एक्सरसाइज करने वाला है।

बीच में पानी है और जोकि गंदगी निकलता है जोकि पानी गंदा दिखाई दे रहा--

पीछे में दिवाल पास बाइक का लोगो बनाया गया है जो हरे कलर का है देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

उसके बगल में एक अ कुछ बच्चे के खेलने की ट्रेन की पटरी पर गाड़ी है जोकि बनाया गया है।

बीच मे एक गमला है गमला के अंदर एक पौधा लगाया गया है।

सारे बच्चे हुं रेड कलर का कुर्सी पर बैठे हुए हैं हुं बगल में एक ब्लैक बोर्ड भी है ।

साइड्स से फोटो लिया गया है जोकि देखने में हल्का पुराना पूल लग रहा है हरे भरे घास नजर आ रहा है।

बहुत बड़ा सम्मेलक है उनके आगे बहुत सारा भीड़ भाड़ है और लेडिस जेंट्स भी इसमें है।

भी है बहुत सारे लोग हैं जिसमें सब बहुत लोग का चेहरा ढका हुआ है।

इसमें कुछ किटनाशक दवा का छिड़काव दो लोग कर रहे हैं।

उसमें व्हाइट कलर का दवा का मिलावट किया हुआ है।

एक बहुत बड़ा सा बाउंड्री है बाउंड्री के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

बड़ा बड़ा टाइल्स है आ उसके ने टाइल्स के ऊपर कुछ ढाका हुआ है।

बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी है यहां पे सारे बुक कापी किताब रखे हुए हैं।

ये काफी बहुत बड़ासा स्पेस जगह है जिसमें का आने जाने की व्यवस्था किया गया है।